सामने में एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ दिख रहा है।

की अच्छा दिख रहा है और नदी का पानी बहोत शीतल शान्त--

नजर आ रहा है स्टेज पर एक आदमी खड़ा है उसके पीछे में एक क्रॉस बना हुआ है यहां पर एक कार्यक्रम चल रहा है।

फूलों से सब कुछ सजाया हुआ है।